और एक ऑफिस के दरवज्जे के सामने एक कार खड़ी हुई है एक उसके हरी हरी घास दिख रही है।

यह बहोत बड़ी नदी है दो नाव दिख रही है।

बहुत बड़ी पार्क है बीच में पानी भरा हुआ नीला पानी दिख रहा है।

मंदिर हैं दरवजे में तीन इंसान दिखाई दे रहे हैं।

उसके आजू बाजू कोई आदमी नहीं देखाई दे रहा है और आगे रास्ता भी है एक गाड़ी खड़ी हुई है गेट में।

एक स समान लान स्टेशन वाला दिखाई दे रहा है रेता की जगह है।

मुठियल लगी हुई हैं उसमें ताल दिखाई दे रहा है।

दो लोग खड़े हुए हैं एक ग्राहक खड़ा हुआ है।

एक बहोत बड़ा बंगला दिखाई दे रहा है नीचे बहोत बड़ा गेट है ऊपरे तीन छोटे छोटे गेट दिखाई दे रहे है।

मछली बेचने वाले इंसान दिखाई दे रहें हैं तीन चार लोग--

आजू बाजू कपड़े देखाई दे रहे हैं नीचे टाईल्स लगा हुआ है।